पहाड़ जो काफी डिजाइनर लग रहें हैं ऊपर का खुला आसमान है जो सफेद और नीले रंग का लग रहा है ये बहुत ही प्यारी जग --